पास में एक चिलम में मोमबत्ती बाल रखी हुई है।

इसमें दो नीचे हरे रंग के दो मैंट बिछा रखे हुए हैं।

और जिसमें एक कोर्ट में गत्ते की पेटी भी धर रखी हुई है जिसमें कूड़ादान है।

और बादल भी बहुत अच्छा छाया हुआ है।

और बहोत से आदमी खेल रहे हैं।

और बराबर साइड में दो लाल रंग के पर्दे भी आगे रखे हुए है।

और एक आदमी मोटर साइकिल ले के जा रहा है जिसमें लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी हुई है।

और बहुत अच्छी हरियाली आ रही हुई है।

यह एक होटल है इसमें बहुत सी अच्छी लाइट लगी हुई है।

और एक गोल वाली मेज भी रखी हुई है।

और इसमें लग रही है की फिटिंग भी होई हुई है।

और मोटरसाइकिल पे दो लड़के बैठे हुए है एक लड़के ने पीछे बैग टांग रखा है।

यह एक बैंक है बैंक में तीन चार आदमी भी खड़े हुए हैं।

और एक आदमी ने नीले कलर का कुर्ता पजामा भी पेहन रखा है।

मेज पे दो कटोरी रखी हुई है और दो चम्मच भी रखी हुई है।

यह एक चरच है। चरच में लाइट भी लगी हुई है और दो छत के पंखे भी लगे हुए है जिसमें एक दीवाल की घड़ी भी लगी हुई है।

और कुछ नाज के कट्टे भी अंदर डांग लगा रखी है।

दो लेडिज भी है लेडिज के पास में तीन बच्चे हैं।

और कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं और गेट की तरफ ऊपर की तरफ पर्दा भी लगा रखा है जो फूलों से सजा रखा है।

यह एक गोदाम है इसमें और ऊपर टीन की चद्दर भी लगी हुई है।

में भोजन तौलते है लड़के एक लड़के ने लाल रंग की शल्ट भी पह रखी है।